यह एक पुल का दृश्य है पुल में काफी साड़े पोडियां--

दो पंडित नीचे बैठकर हवन की सारी सामग्री को इकट्ठा करके तैयार--

खेत में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं यह वृक्ष--

फार्म के बाहर व्हाइट बोर्ड पर लिखा है सोहनगढ़ नेचुरल फॉर्म ।

इसके वॉल पर ब्राउन ग्रे --

और भी पीछे भुट्टे पड़े हैं।

बनाई गई है फ्लेक्स के ऊपर पंजाबी में लिखा गया है।

यह नर्सरी का दृश्य नर्सरी में काफी हरे-भरे सुंदर वृक्ष--

रेत दूसरी बकेट में फायर आग --

ऑटो की अजेंसी के बाहर काफी कलरफुल कार्स --